यह फोटो एक केमिस्ट की दुकान की इसमें बहोत बड़ा समा--

ठीक करण लाग रिया स जड़ह --

बहोत सारे पत्थर भी पड़े हुए से--

और ये हाथ मिलान लाग रे से।

यहां एक मैकेनिक इसे ठीक कर रहा--

यह तस्वीर एक बहोत बड़े पार--

जाड़ा एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही से और एक बिजली का ख--

घड़ें पंखे लाग रहे है।